इस तस्वीर पर मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है।

और पहाड़ो पर मोहरा छाया हुआ दिख रहा है।

इस पार्क के कोने पर कई सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए है।

और उस मैकेनिक ने काले और सफेद रंग का मिश्रण का कपरा पहना हुआ है।

इस तस्वीर पर मुझे कई सारी औरत दिख रहे हैं।

तस्वीर पर सभी औरतों ने साड़ी पहना हुआ है।

और गोम्पा के पीछे मुझे बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है।

स्टेशन के बाहर अरुणाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड्स भी रखा हुआ है।

उस कैबिनेट के ऊपर कई सारे सामान रखा हुआ है।

उस दुकान का पोस्टर नीले रंग का है।

और उस गेराज में कुल मिलाकर नव गाड़ियां हैं।

के बाहर कई सारे पौधे उगाए हुए हैं।

इस बिल्डिंग के बाहर कहि सारी सफेद गाड़िया दिख रही है।